और चारों तरफ से एक बड़ी-बड़ी एक झड़ी बनी हुई है नीचे घास है और नीचे सुखा डला हुआ है ऊपर--

चारों तरफ से एक पार्क है जिसमे एक फिसलपट्टी है जो कि रेड कलर की है जिसमे से एक लकड़ी फिसल रही है।